एक बच्चा दिख रहा है जो कि पीली गाड़ी खेलते हुए दिख रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है एक पानी की बॉटल रखी हुई दिख रही है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है पीछे पेड़ दिख रहे है।

गैस पर रखा गुलाबी कलर का मेहरुन कलर का जोकि बहोत ही बढियाँ लग रहा है आदमी ने भी मेहरुन कलर का कपड़े पहेन रखे है जोकि पीछे रखा है ब्लैक कलर का दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते है सामने टेंट दिख रहा है जोकि बहुत ही सुंदर टेंट लग रहा है टेंट हमको नीला पीला कलर का दिख रहा है जोकि बहुत ही बढियाँ दिख रहा है हमको पेड़ दिख रहे है जोकि हरे हरे दिख रहे है चुकी सुंदर पेड़ लग रहे है बहुत ही प्यारे लग रहे है।

जैसा की हम देख सकते है सामने बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत ही बढियाँ दिख रहा है सामने पानी दिख रहा है जोकि बहोत ही भरा दिख रहा है जोकि बहोत ही सुंदर लग रहा है।